और यहाँ एक बहुत बड़ा क्लासरूम हें और एक बहुत बड़ा ब्लैकबोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें एक शटर वाला गेट लगा हुआ है और बिल्डिंग के ऊपर चादरे डाली हुई हैं।

और ये जहानाबाद की बिल्डिंग है और ये बहुत प्यारी बिल्डिंग है जो कि व्हाइट और ग्रीन कांबिनेशन में है।

इसमें काफी अच्छी सिटी हुई है बैठने के लिए और अ इसमें एक शॉप जैसी बनाई हुई है ऑटो के अंदर ही।